और बगल में एक दरवाजा लगा है जिस पे पर्दा लगा हुआ--

जहां पर बहोत सारे फूलों की माला--

एक बहोत बड़ा सा मशीन का पिक्चर दिखाई दे रहा है।

जहां एक लोटीया भी रखी हुई है।